वॉल दिखाया गया उसमें सटा हुआ कुछ केबिन टाइप का क्या टेबल लगा हुआ जिसपे पानी का बोतल दिखाई जा रहा है चम्मच स्पून जैसे कुछ--

वे दिखाई दे रहे हैं और कुछ शैवाल साइड में दिखाई दे रहे हैं कुछ शैवाल की साइजे बड़ी --

ग्रीन ग्रीन सी घांस जैसी दिखाई जा रही है वाइट कलर के घर दिखाए जा रहे हैं नीचे का हिस्सा कुछ भीगा --

रिबन्स जैसे लटकाए गए हैं सामने में एक शॉप है और उस शॉप में बहुत सारे सामान दिखाई जा रही है।

आदमी दिखाई दे रहा है और अंदर जाते हुए एक लेडिज दिखाई दे रही है व्हाइट कलर का कुछ ऊपर का कलर किया हुआ है कुछ ब्लैक में रे --

जिसमें एक बिल्डिंग रेडी होती हुई दिखाई दे रही है जिसमें कुछ मंजिला रेडी हो गया और ऊपर में बांस लगा हुआ दिखाई दे रहा है --

ब्लैक कलर की फोर विलर है नीचे पक कच्चा मिट्टी रास्ता दिखाया गया है।

कलर मार कर के उसके ऊपर लिखा गया हैं वैष्णो फैंसी स्टोअर नीचे में कुछ--

पैंपर्स की पैकेट्स लगी हुई है और बगल में कुछ लिखा हुआ बोर्ड हॉफ दिखाई दे रहा है।

हरिनगर का कुछ स्टेशन जैसा कुछ लग रहा है या फिर लॉज जैसा कुछ दिखाया जा रहा है जो कि ऑरेंज कलर से ब्लैक --

खुला आसमान वाइट कलर में दिखाया जा रहा है कुछ धुंधला धुंधला सा भी आसमान दिखा जा रहा हैं।